साइड में वार्डरोब है और ब्राउन कलर का वॉर्डरोब है फिर फन फैन लगा हुआ है।

चावल गेहूं वगैरह सब दिख रहा हैं फिर मसाले भी लटक रहे हैं ।

शैंपू भी हैं वगैरह वगैरह बहुत कुछ दिख रहा हैं ।

चेयर के बीच में एक टेबल रखा हुआ है उसके ऊपर एक चाय का केतली रखा हुआ है।